इस दृश्य में मुझे कई सारी महिलाएं दिखाई दे रही है ।

कुर्सी भी दिखाई दे रही है।

मोमबत्तियां जलती हुई दिखाई दे रही है ।

यहां कांच के बर्तन भी दिखाई दे रहे हैं।

दो पहिया वाहन भी दिखाई दे रहे हैं ।

वाहन भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ विद्युत मण्डल भी दिखाई दे रहा है।

पानी का नल भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में मुझे मेज पर लगी हुई परदों की सजावट दिखाई दे रही है।

यहां गुलदस्ते रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और भी अन्य खेलने के वस्तुएं भी दिखाई दे रही है।

वेल डन विद्युत प्रदायक भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में मुझे कई सारी साइकिले दिखाई दे रही है।

और अन्य खाने की वस्तुएं दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में मुझे एक इमारत दिखाई दे रही है।

यहां कई सारे द्वारा भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां वाहन भी दिखाई दे रहे हैं।

संगीत का यंत्र भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में मुझे सड़क पर चलती हुई वाहने दिखाई दे रही है।

प्लास्टिक के डब्बे में रखी हुई कांच की बोतलें दिखाई दे रही है।

कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

यहां शितक यंत्र भी दिखाई दे रहा है।

पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

के बड़े बड़े खंबे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।